कुछ बोर्ड्स है जहां पर मशीन के तारे लगी हुई हैं।

जहां पर सूरज डूबने का समय दिखाया जा रहा है।

ट्रे के ऊपर बहुत सी छोटी छोटी जलेबियां रखी है।

आइसक्रीम की दुकान है जिस पर लिखा है टॉप एंड टाउन ।

टरेक्टर के ऊपर दो मोबाइल नंबर लिखे है।

ये कोई रेस्टोरेंट लग रहा है जिसमें काफी सजावट की हुई है।

उनके बगल में एक बोर्ड है जिस पर श्रीजी इंटरप्राइजेज लिखा है।

उनके सामने दो टीचर खड़े हैं जो कि उन्हें कुछ बता रहे हैं।

बहुत सारे स्लाइडर है जिस पर से स्लाइड करके लोग स्विमिंग पूल के अंदर जा रहे हैं।

चर्च की दीवारों पर बहुत सी पेंटिंग बनी है जीजस की।

एक मारुती सुजुकी की पार्किंग एरिया है।

बालों में पानी के स्प्रे करने के बॉटल है।